यह एक शोकेस है जो शोकेस के ऊपर एक प्लेट रखा है प्लेट के अंदर --

और एक पेट्रोल पंप में बहुत सारे व्यक्ति एकत्रित होए ये होय हो |

चट्टान है च-च-चट्टान के नीचे गुफा है।

और साइड में एक छोटा-सा मंदिर दिखाई दे रहा है।

और यहाँ बिल्डिंग के सामने बहुत सारे पेड़-पौधे लगाए गए हैं |